यहां गरीब नवाज शू लिखा हुआ है।

सामने में ढेर रैक बनाए गए हैं।

यहां पे एक रेड कलर का घर दिखाई दे रहा है।

किसी परफॉर्मेंस का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक ही कलर की ड्रेस पहनी हुई है जो अलग अलग कलर की है।

आसपास में कुछ लाइटें भी जल रही है।

में उर्दू में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

ऊपर में ढेर सारे छोटे छोटे व्हील कैप के पहिए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पंखे और ढेर सारे काटून के बॉक्सेस हैं और यहां पर पंखे अभी अभी लगाए गए हैं क्योंकि यहां पे ढेर सारे पंखे के कार्टून के बॉक्सेस हैं।

यहां पे ढेर सारे मट्टे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एजाज ऑटो इलेक्ट्रॉनिकल वर्क लिखा हुआ है।

किसी स्कूल की जैसे है।

बाहर में कुछ ईंटें भी दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग के गेट भी दिख रहे हैं।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

सेल्ट का भी कुछ चित्र बनाया गया है सेल्ट जैसा कुछ लग रहा है व्हाइट व्हाइट का।

जगह भी खाली किया गया है।

पत्थर भी दिख रहे हैं।

बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जो सफेद कलर के हैं।

ऊपर में ढेर सारे और भी पेड़ हैं।

कुछ वैन कुछ स्कॉर्पियो कुछ स्विफ्ट जैसी--

कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे ढेर सारे फूल भी लगे हुए हैं।

नीचे में कुछ पर्दे औ कुछ ग्रिल भी लगे हुए हैं।

से के रूम बनाए गए हैं।

जिसमें पे एक लड़का बैठा हुआ है।

छोटे छोटे चिड़िया दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में ढेर सारे ट्रेडमिल दिखाई दे रहे हैं।

बाहर सामने में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वहां पे कुछ लाइटिंग की गई है।

इस तस्वीर में ए_सी के फैन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक मूर्ति बनाई गई है।

इस तस्वीर में एक आधार--

में ढेर सारी कार की मशीने को सामानों को रखा गया है जिस पर एक साइड लिखा हुआ है यहां--

सामने में भी कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।

ऊपर में करकट दिखाई दे रहा है करकट के पास एक बड़ा सा लाइट लगाया गया है।

यहां पे ढेर सारी मिठाइयां दिखाई दे रही--

यहां पे ढेर सारे लोग गोल्डन जैकेट पहन के डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे नीचे में कुछ पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

जो व्हाइट व्हाइट कलर के फैन दिखाई दे रहे हैं।